और यहां खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान व्‍हाईट दिखाई दे रहा है।

और यहां पे पत्‍ता सारे दिखाई दे रहे है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा हैजिसमें व्‍हाईट कलर कलर दिखाई दे रहा है।

आकार की बनी हुआ है तथा इसमें एक चिडि़या उड़ती हुई दिखाई दे रही है इसके बाहर गैलरी बनी हुई है।

के बाहर यहां एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ है कचरा दिखाई दे रहा है कजी जमी दिखाई दे रही है।

बाईक रखी दिखाई दे रही है।

पालकी उठाई दिखाई दे रही है तथा पीछे कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जामतरा दिखाई दे रहा हैइसका गेट लगा हुआ है तथा यहां रेड कलर का दिखाई दे रहा हैइसके अंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैजोकि ज्यादा--